और एक ग्रे कलर की कार है।

यहां पर एक भैया भी दिखाई दे रहे हैं जो पौधों की देखभाल करते हैं।

एक बहुत बड़ी है और एक बहुत ही छोटी है।

बहुत ही हरा भरा मैदान लग रहा है यहां पर अलग-अलग तरीके के पेड़-पौधे हैं।

अलग-अलग कलर भी दिखाई दे रहे हैं शायद यहां पर इनडोर और आउटडोर प्लांट है ये--

अच्छी बात है और यहां पर बहुत हरा भरा है और लोगों को ऑक्सीजन मिलती है।

यहां पर कोई महाराजा या फिर महारानी रहते ही होंगे इसलिए यह किला इतना पुराना दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ लोग उसे देखने गए हैं।

इस चित्र में तो कुछ दो दो मजदूर बिल्डिंग की बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं और जो--

और ये गार्डन बहुत ही सुंदर दिख रहा है बाहर से तो अंदर से कितना सुंदर ही होगा और साइड में शायद टिकट घर है।

बैलून के साथ बैलून के आगे खड़ा हुआ है बैलून के साथ यहां पर एक बैलून के साथ दिल बनाया हुआ है जो लाल कलर का बनाया हुआ है और उसने यहां पर तस्वीर खींची है।